इधर पाइप लिखा हुआ है और मिस्त्री दो गो है जो काम कर रहा है और बालू उलू गिरा हुआ है।

यहां पर एक आपको --